यफणा कई सारा हरयाँ भरयां डाला भी छन यफणा बिट्टा छन दिखेण लग्यां यख मा जी सुख्यूं घास भी छा।

यखमा जी हर्युं-भर्युं डालू कर छा यख फोणू बडू भारी कु ढालदु छा वे ढालदा मा जी कई सारा द्युदार का डाला छन।

यख मा जी दीवाल पर कई सारा पोस्टर छन लग्यां यख भैर मा जी कुछ गाड़ी छन दिखेण लगीं हरयां भरयां डाला छन दिखेण लग्यां।